में से एक खुली हुई दिख रही है जहां इसका गेट कांच से बना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे सामान पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक क्लासरूम को दर्शाया गया है।

यहां पर एक लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर सफेद अक्षरों मे अद्वैत गिरीकरणी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कच्ची मिट्टी दिखाई दे रही है।

पास में एक टोकरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसमें कुछ प्याज पड़े हुए दिख रहे हैं।

कुछ छोटी छोटी घास उगती हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक गार्डन दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है इसमें एक टावर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे जूते रखे हुए दिखाई दे रहे है जो की काले रंग लाल रंग और नीले रंग के दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहुत सारे जूतों के बॉक्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर छोटी छोटी चट्टानें दिखाई दे रही है और आकाश दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही है।